यह दृश्य एक पार्क का दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य किसी घर का दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य किसी रूम का दिखाई दे रहा है।

हॉस्पिटल का रंग नारंगी क्रीम व्हाइट हरे अ ब्राउन में दिखाई दे रहा है।

यहां पास कई सारे पंखे भी नजर आ रही है वाइट कलर मे।

दृश्य एक इमारत की दिख रही है।

सामने एक कार भी दिखाई दे रही है।

सामने की ओर लोहो की मदद से बनी हुई गेट दिखाई दे रही है।

बस लकड़ी पर लोगों की मदद से बनी हुई बेंच कई सारी दिखाई दे रही है।

आमने एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है जिसने ग्रीन कलर का पेंट और वाइट कलर का शर्ट पहन रखा है ।

इस ब्रिज का रंग नीला में दिखाई दे रहा है।